java में logical operators के spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में आप logical operators के बारे में सीखेंगे
logical operators का प्रयोग करके multiple expressions और कोष्ठकों का उपयोग करके precedence को override कैसे करें
इस tutorial के लिए हम प्रयोग कर रहे हैं
इस tutorial के लिए आपको java में relational operators का ज्ञान होना चाहिए
यदि नहीं तो सम्बंधित ट्यूटोरियल के लिए कृपया हमारी दिखाई वेबसाईट पर जाएँ
logical operators का उपयोग मल्टीपल कंडीशन की जांच करने के लिए किया जाता है
यहाँ java में उपलब्ध logical operators की एक सूची है
and or not हम प्रत्येक का विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे eclipse पर जाएँ
यहाँ हमारे पास शेष code के लिए आवश्यक eclipse ide और skeleton है
हमने logicaloperators नामक एक class बनाया और इसे main method में शामिल कर दिया है
अब कुछ variables बनाते हैं
boolean b ;
हम conditions के परिणाम को b में संग्रह करेंगे;
int age is equal to 11
int weight is equal to 42
हमारे पास एक व्यक्ति की ऐज और weight है
हम जांच करेंगे कि we व्यक्ति की ऐज 18 वर्ष से कम है और we न्यूनतम 40 kg है
अब देखें कि यह कैसे करें
b is equal to age less than 18 ampersand ampersand weight greater than equal to 40
इस statement में दो expressions हैं और दोनों के बीच दो एम्परसेंड के चिन्ह हैं
यह जाँचता है कि क्या ऐज 18 से कम है और weight 40 या उससे अधिक है
इस operation को and operation कहते हैं
अब value b को print करते हैं
system dot out dot println b;
सेव और run करें
जैसा कि हम देख सकते हैं output true है क्योंकि दोनों ही conditions संतुष्ट हुई हैं
अब weight को बदलें ताकि एक condition संतुष्ट न हो और code को पुनःरन करें
42 को बदलकर 32 करें
सेव और run करें
अब output false आता है
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऐज 18 से कम होने की condition संतुष्ट हुई है
किन्तु weight के 40 के बराबर या उससे अधिक होने की condition संतुष्ट नहीं हुई है
and operation के लिए परिणाम के true होने के लिए दोनों conditions का true होना आवश्यक है
इसलिए हमें हमारे output के रूप में false प्राप्त होता है
इस तरह दोहरे एम्परसेंड चिन्ह का प्रयोग करके हम and operation को क्रियान्वित कर सकते हैं
माना कि हमें ऐज और weight ज्ञात हैं और यह पर्याप्त है यदि केवल एक conditions संतुष्ट हो जाये
दूसरे शब्दों में हमें यह देखना ज़रूरी है कि क्या पहली condition true है या दूसरी
यह or operation का उपयोग करके किया है
सबसे पहले पहली condition को हटायें
और type करें
age less than equal to 15 pipe pipe weight less than equal to 30
यहाँ दो conditions हैं और उनके बीच double pipe चिन्ह है
यह statement जाँचता है कि क्या दी गई दो conditions में से कम से कम एक संतुष्ट होती है
output देखने के लिए code रन करें सेव और रन करें
हम देखते हैं कि output true है
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक or operation के लिए and operation की तरह दोनों conditions का true होना आवश्यक नहीं है
इसके लिए न्यूनतम एक condition का true होना आवश्यक है
अतः weight की condition संतुष्ट नहीं हुई है पर ऐज की condition संतुष्ट हुई है
हमें output में true प्राप्त होता है
अब आयु को इस तरह से बदलें कि दोनों conditions false हों और परिणाम देखें
11 को बदलकर 17 करें
सेव और run करें
अब output false आता है क्योंकि दोनों ही conditions संतुष्ट नहीं हुई हैं
इस तरह हम एक or operation को क्रियान्वित करने के लिए double pipe चिन्ह का प्रयोग करते हैं
अब हमें उन लोगों के लिए जाँचना है जो 15 से अधिक ऐज के हैं और उनका weight 30 किग्रा से अधिक है
दूसरे शब्दों में हमें इस condition के बिल्कुल विपरीत जाँचने की आवश्यकता है जैसा हमने किया था
ऐसी स्थिति में हम not operation का प्रयोग करते हैं
सर्वप्रथम condition को कोष्ठकों में बंद करते हैं
और condition से पहले एक एक्सक्लेमेशन mark लगाएं
एक एक्सक्लेमेशन mark का प्रयोग करके हम कोष्ठकों के अन्दर कंडीशंस के बिल्कुल विपरीत होने की जांच करते हैं
चूँकि पिछला output false था इसे true होना चाहिए अब देखते हैं
सेव और run करें
जैसा कि हम देख सकते हैं कि output पिछले के बिलकुल विपरीत है
इस तरह एक्सक्लेमेशन mark का प्रयोग करके हम not operation को क्रियान्वित करते हैं अब मान लेते हैं कि हमें 15 से कम ऐज वाले लोग चाहिए
या 18 से कम ऐज वाले और 40 किग्रा से कम वेट वाले लोग
अब देखें कि इस condition को हम किस प्रकार कार्यान्वित करते हैं
पिछली condition को हटायें और type करें
ऐज 15 से कम
या ऐज 18 से कम
और weight 40से कम
जैसा कि हम देख सकते हैं कि condition स्वयं ही अस्पष्ट है
इसके अतिरिक्त हम नहीं जानते हैं कि पहले or operation को क्रियान्वित किया जाएगा या and operation को
यह operators की precedence पर निर्भर करता है
ऐसी स्थिति में हम precedence को overwrite करने और condition को स्पष्ट करने के लिए कोष्ठकों का प्रयोग करते हैं
अतः कोष्ठकों को शामिल करते हैं
code को रन करते हैं सेव करें रन करें
अब हालांकि पहली condition जो कि ऐज 15 से कम की है संतुष्ट नहीं होती है
दूसरी condition जो कि
ऐज 18 से कम और weight 40 से कम की है संतुष्ट हुई है
अतः output true है
एक नियम के अनुसार अस्पष्टता से बचने और व्यंजकों को स्पष्ट करने के लिए कोष्ठकों का प्रयोग करें
और इस तरह हम multiple conditions के लिए जांच करने के लिए logical operators का प्रयोग करते हैं
इसके साथ हम इस tutorial की समाप्ति पर आ गये हैं
हमने सीखा logical operators के बारे में और logical operators का प्रयोग करके multiple expressions को कैसे जाँचें
कोष्ठकों का प्रयोग करके precedence को कैसे override करते हैं
एक नियत कार्य के रूप में
ज्ञात कीजिए कि क्या दिखाए गए दो व्यंजक समतुल्य हैं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
यदि आपके पास अच्छी bandwidth नहीं है तो आप इसे download करके देख सकते हैं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
इस mission पर अधिक जानकारी spokentutorial org/nmeictintro पर उपलब्ध है
मैं श्रुति आर्य अब आपसे विदा लेती हूँ धन्यवाद